जिसने काली हाफ पेंट और पीले रंग की टी-शर्ट पहनी हुई है वो दुकान के सामने ठहर कर कुछ--

नदी नजर आ रही है जोकि दूर तक जा रही है नदी के उस पार भी हम देख सकते है की बड़े पेड़ नजर आ रहे है।

उपर बादल भी दिखाई दे रहे है सूरज की किरने पानी--

बड़े बड़े पेड़ भी नजर आ रहे है उपर बादल भी दिखाई दे रहे है और इस तरफ भी हम पेड़ --

बोटलो के अंदर हम देख सकते है बिस्किट चॉकलेट इसी कई सारी चीज़े रखी --

की बहुत सारे लोग नजर आ रहे है गुब्बारे दिख रहे है सफ़ेद और गुलाबी रंग के और हम देख सकते है यहाँ --

लॉरी पेट्रोल भरवाती हुई नजर आ रही है और कुछ मोटरगाडी भी अंदर की तरफ रखे हुए दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर हम देख सकते है बुधा की मूर्ति नजर आ रही है जोकि सुन्हेरे रंग की दिखाई दे रही है नीचे की तरफ फूलों से सजावट की गई --